पोल लगा हुआ है जिसमें एक गेट बना हुआ है और ऊपर की तरफ एक बड़ा- सा सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ हैं।

जो कि यह एरिया पान के है और ये हरे - हरे है और पीछे की तरफ बड़े - बड़े पेड़ भी है।

और एक लड़का खड़ा है जो कि हाथो में अपने ड्रायर लिये हुए है और नीले रंग का मास्क पहना हुआ है।

नदी हैऔर नदी के ऊपर बड़ा सा एक ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज पर एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है जोकि लाल रंग का है।

यह एक नर्सिंग होम है और यहाँ पर बाउंड्री भी दी गई है एक बड़ा सा --

उसके ऊपर नवजीवन नर्सिंग होम लिखा हुआ है सफेद रंग से --

बीचों-बीच एक रास्ता जा रहा है और रास्तों के दोनों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और इन सभी पेड़ों की--

कटाई एवं छटाई की गई है एक पोल भी लगा हुआ है।

टेक पे सजा के रखा गया है और सभी अपनी-अपनी सेल्फ पे अपनी-अपनी जगह रखी हुई है ऊपर के तरफ एक पंखा भी लगा हुआ है।

और यहाँ पर पेंट किया गया है दरवाजे के पास और यहाँ पर डायनेमिक क्लासेस लिखा गया है नीले रंग से --

रंग-बिरंगे कलर के कपड़े पहने हुए हैं एक लड़की--